होटल है हर चीज यहाँ पे मिल रहा है और खाने के बहुत चीज यहाँ पे दिख रहा है और आप भी आ सकते है केक लग रहा है देखो--

बंजारे के साथ यहाँ पे डांस कर रही है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे डांस कर रही है आप भी आ सकते है यहाँ पे घूमने के लिए बहुत खूबसूरत नज़ारे के साथ डांस कर रही है।

हेलो गाइस यहाँ पे देख सकते है बाल लड़की लोग का काटन-काटने वाला बाल है बाल काट रहे लड़की का ये आदमी काट रहा बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाल काट रहे है।

हेलो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक नांव दिख रहा है उसमे बहुत सारे लोग बैठे हुए--

पार्टी वगेरा करने के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ यहाँ पे दिख रहा है आप भी आ सकते है बहुत ही अच्छा है यहाँ पर दिख रहा है और आप भी आ सकते है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ दिख रहा है और आप भी आ सकते--

हेलो गाइस आप देख सकते है यहा पर दो तीज यहाँ पे सेल्फी खिचवा जा रहा है और यहाँ पे लग रहा है बाल कट हो रहा कट होता है।

हेलो गाइस यहाँ पे देख सकते है बहुत ही अच्छा यहाँ पे सजाया गया है बाल काट ने वाला दुकान है बहुत ही सुन्दर यहाँ पे हर कटिंग का यहाँ पे बाल कटता है और बाल कटाने के लिए यहाँ पे बहुत आदमी आके यहाँ पे बैठे हुए है।

हेलो गाइस यहाँ पर देख सकते है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा के साथ ही यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा--